ये बच्चों के साथ पेड़ लगवा रही है यहां पे--

के छोटे डंबल है जैसे छोटे साइज के --

ये यहां पे आदमी मिला यहां पे बाल काट रहे हैं ये लड़का लड़कियों के बाल काट रहा है हेयर स्टाइल यहां पे लाइन लगी हुई है।

और यहाँ पे आप देख सकते हो--

यहां पे आप देख सकते हो वर्ल्ड

और यहां पे तकिए भी दिख रहे हैं यहां पे--

यहां पे आप देख सकते हो एवं--

और ऊपर लाइट दिख रही है आप देख सकते हो बहोत अच्छी लाइट है।

और यहां पे खेलने के लिए भी है।

यहां लाइट ही लाइट लगी हुई है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर घास घास लगी हुई है चारों तरफ घास ही घास दिख रही है।

यहां पे चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहां पे--

मैं यहां पर देख रहा है यहां पे एक रूम है।

दरवाजों पे क्या तो आई_डी लगी हुई है और यहाँ पे चप्पल निकाले रखी है और यहाँ पे तीन रूम हैं बहुत अच्छे रुम हैं।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

दुकान है दुकान के आगे बाइक और गाड़ी खड़ी हुई है यहां पे दवाइयां मिलती है।